इस फोटो में एक बहुत सुंदर बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के सामने बाउंड्री की गई है।

इसमें बादाम शेक पर हरे रंग की लाइट जला रखी है इसके ऊपर से एक बहुत ही सुंदर सी बिल्डिंग दिख--

पीछे एक बिल्डिंग भी दिख रही है साथ मे कुछ पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं उसके नीचे से एक बहुत सुंदर--

इसके अंदर एक गाड़ी खड़ी हुई है जो हरियाणा सरकार की गाड़ी है इसके ऊपर हरियाणा सरकार लिखा हुआ है।

ने जिसके नीचे रोड दिखाई दे रहा है।

पीछे से एक फिटिंग की वायर लटकी हुई है इसका रंग पीला दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक ईमारत दिखाई दे रही हैं जिसके ऊपर एक बैंक का स्टीकर लगा हुआ हैं।